और ऊपर दो प्लंबर टाइप के लगे हुए हैं इसपे बैनर से--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

हैं उम्म क्रिकेट खेलने वाले वो भी पहन रखे हुए हैं उसने ग्लव्स ।

मुझे यहां पे एक बहोत बड़ा साफ सुथरा हॉल नजर आ रहा है जहां पे एक फ्रेम लगा हुआ है बहोत बड़ा जो कि महात्मा गांधी जी उसपे छपे हुके हैं और--